जिसमें एक बहोत बड़ा सा गेट लगा है और इसमें बहोत --

जिसके ऊपर एक करकट लगा है जोकि बहोत--

एक बहोत ही बड़ा सा--

और व्हाइट कलर का है।

यह देख सकते हैं कि यहां पर एक औरत है।